जो की व्हाइट कलर से कलर रेड है।

ये मुझे एक तरह का मंदिर नज़र आ रहा है जो की बहोत पुराना समझ में आ रहा है।

इस इमेज में मुझे कलरफुल लाइट नजर आ रही है।

जो कि एक जो अह मेल व्यक्ति है वो कि वो चश्मा लगाया है और उसके बगल में जो औरत है वो साड़ी पहनी हुई है।

आदमी के पीछे सफेद कलर की कुर्सी नजर आ रही है।

यहां बस मुझे ट्रेन नज़र आ रही है यहां दो कलर के इलेक्ट्रिक बॉक्स रखे हुए हैं।

इसमें एक पीले कलर का शर्ट पहना हुआ एक व्यक्ति दिख रहा हैं जो की पूजा कर रहा हैं।

जोकि एक कांच की फ्रेम के अंदर रखे हुए हैं।

उस होडिंग में हर्ष इंफ्राटेक एसोसिएट्स --

यहां लोग अ मुझे इसमें इस जमीन में एक फसल नजर आ रही है।

दूर दूर बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे है।

ए सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है उसके ऊपर एक होटल नज़र आ रहा है लाल कलर --

फूल से सजी हुई काफी चीजे मुझे नजर आ रहे--

जिसमें एक व्यक्ति मुझे भागता हुआ नजर आ रहा है और उसमें दो--

और यहां एक टाइगर की तस्वीर और एक हिरन की तस्वीर मुझे--

और यहां पास बड़े बड़े पत्थर भी मुझे नजर आ रहे हैं।

लोग पैसेंजर इसके अंदर वेट कर रहे हैं मुझे नजर आ रहा--

मुझे इसमें एक ऐसा चीज दिख रही है जो कि वेह किसी चीज का शिकार कर रहा है।

यहां पास काफी बलून भी नजर आ रहे हैं कलरफुल --

यहां पेड़ भी काफी अच्छे हैं यहां पत्थर बहोत सारे मुझे नजर आ रहे हैं।

काली कलर की टोपी पहना हुआ है और नीचे लोअर पहना हुआ है।

यहां एक मेला नजर आ रहा है जोकि लोग यहां पास ये घूम रहे हैं।